उसकी माफ़ी माफ़ ले रहा है टेप्स से माप रहा है और अलग अलग इससे जोड़ रहा है।

यहाँ पे इस तस्वीर को देख पा रहे हैं तस्वीर एक कंपनी के बोक्सेस ये बोक्सेस --

यह गाँधी मेडिकल कॉलेज है भोपाल में।